यहाँ देवा पर आई.टी.आई. कॉलेज यहाँ पर है देवा पी.वी.टी. आई.टी.आई. कॉलेज में स्थित है।

बोहोत ही सुन्दर और बोहोत ही अजीब जैसा दिखाई प दे रहा है।

यहाँ पर पानी गिरते हुए कोई झील का फोटो दर्शाया गया है यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा झील का फोटो दर्शाया गया --

देख सकते है ग्राउंड कितना बड़ा है और बहोत ही हरा-भरा ग्राउंड भी है यहाँ पर एक नारियल का पेड़ भी है।

यहाँ पर कितने छोटे-छोटे पेड़-पौधे मतलब पत्तियां जो खाती है यह चिड़ियाँ वह यहाँ पे दिए हुए।

यह यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया का है यहाँ पर लगे हुए यहाँ पर एक ए.सी. लगी हुई है यहाँ देख सकते हैं बाइकें भी खड़ी हुई हैं यहाँ पे नीचे एक सीमेंट कर दिया गया है बहुत ही सुन्दर-सुन्दर दिखाई दे रहा है और इसके --

किसी ने निर्माण किया है देख सकते है कितना सूंदर सा दृश्य स्कूल का यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह स्कूल का इन्ही के द्वारा इन्ही की ज़मीन मे बनाया गया था इन्ही के --